सामने एक आदमी खड़ा है स्वेटर पहना हुआ है ब्लैक कलर का बैग डाला हुआ है पीछे --

बिल्डिंग के ऊपर चार्ट चिपके हुए उसके ऊपर अलग अलग लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है और खिड़किया दरवाजे दीवार पे लगे हैं।

और इधर दीवार के ऊपर सफेद कलर की हुआ है खिड़की लगी हुई है आगे दरवाजा लगा हुआ है कांच लगे हुए हैं।

इस तस्वीर के अंदर एक पेट्रोल पंप है ऊपर कलर किया हुआ है नीला और पेट्रोल पंप के पास कुछ आदमी खड़े हैं।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

यहां पर ओवर सर्विस होटल लाउड्री गेस्ट लाउड्री हॉस्पिटल लाउड्री हॉस्टल लाउड्री रीटेल लाउड्री --

इस चित्र में एक लड़की बैठी है एक आदमी बैठा है बेंच के ऊपर कुछ डिब्बे पड़े कलर के --